और एक दरवाज़ा हैगा जिसकी क्रीम एंड रेड है इसमें लाइटें डली हुई हैंगी जिनकी ब्लू पिंक रेड एंड पिंक है।

यहा पर एक रोड हैगा रोड मे बहुत सारी गाड़ियां हैंगी यहा पर स्कूटर हैटैक्सी है।

--और यहा पे बहुत सारी टैक्सी हैंगी और यहा एक रेलवे स्टेशन हैगा साइड में काफी बड़ा रेलवे स्टेशन बना हैगा यह जो की पिले कलर से पुता हैं।

यहाँ तो बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं लाइट के खम्बे बिजली के तार लगे हुए हैं और यहाँ पर पेड़-पौधे लगे हुए हैं दुकाने खुली हुई हैं ठेले--